कुछ आदमी ने शॉप पर में फूल डाले हुए हैं।

ये एक बाग की तस्वीर है ये पानी का बाग है लोग पानी में कूदने के लिए तैयार हैं।

मुख्तलिफ किस्म के झूले लगे हुए हैं इधर लोग स्लाइड लेने लगे हैं ऊपर से नीचे आएंगे--

दो आदमी इंतजार कर रहे हैं वो अपनी बारी के इंतजार में है एक आदमी छतरी लेकर बैठा--

मस्जिद के बाहेब पौधे लगे हैं।

एक हस्पताल है हस्पताल की बहोत बड़ी इमारत है।